मुझे यहाॅं पे एक टेलर दिखाई दे रहा है और वो कुछ कर रहा है जो क्लियर दिखाई नही दे रहा है।

तारी-तार से और जो जेंट्स है उसको व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और ये --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

और घर दिखाई दे रहे है और घर में बहुत सारे कलर भी मतलब पुते हुए है वाइट येलो ग्रीन मतलब बहुत सारे है रेड भी है और ग्राउंड है कई-कई पेड़ है।

मुझे यहाँ पे एक बहोत बड़ा घर दिखाई दे रहा हैं। जिसमे बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं और ये मुझे दो-तीन मंजिल का दिखाई दे रहा हैं। यहाँ पे लकड़ियों से कुछ लगा हुआ हैं।

और ब्लैक ब्लैक सा जिन्स पहना हुआ है और जो बस है उसपे मतलब येल्लो कलर से उसके कांच पे कुछ लिखा हुआ भी है और बस एक रोड पे खड़ी हुई है इसके इसके साइड में पेड़ है।

यहाँ पे एक मैदान जैसा लग रहा है जिसमें एक लड़का खड़ा हुआ है और तीन-चार तार के खंभे जैसे हैं जिस पे कुछ टाॅपरी जैसी बनी हुई है जो भी मलतब लोहे की है।